दीवार के पास में ईटे रखी हुई है आसमान नीले रंग का है।

अंदर बहुत सारा लोहा रखा हुआ है जहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

ए_टी_एम के बाहर बहुत सारे आदमी और औरतें खड़े हुए हैं एक आदमी लाल रंग शर्ट पहने हुए है।

पीछे दिवाल हैं दीवाल का रंग सफेद है दीवार पर बहुत सारे लाल नीले गुब्बारे लगे हुए हैं।

पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है जिसमें बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है पीछे सोफे पड़े है जो सफेद रंग के हैं।